जिसमे बहुत सारे आदमी नहाते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पे सामने में एक चेयर भी लगी हुई है।

यह एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर का चित्र लग रहा है।

यहां पे एक छोटा बच्चा भी खड़ा है।

टेबल के ऊपर कपड़ा रखा हुआ है।